मेज़ नजर आ रहा है मेज़ सफ़ेद कर के जिस पर कुछ लिखा हुआ है तथा बाहर की ओर देख सकते हैं कैरम बोर्ड लटके हुए है दो।

जिसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं तथा अगल-बगल उसके भवन दिखाई दे रहे है किनारे-किनारे भी बहोत सारी दुकानें नजर आ रही है।

जहाज दिखाई दे रहे जहाज के बड़े-बड़े तार दिखाई दे रहे तोपे नजर आ रही ऊपर की ओर --

ये एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप काफी शानदार चमक रहा है ऊपर लाइटे लगी है तथा इनके इसके छः-सात पिलर दिखाई दे रहे हैं जिनपे रंग-बिरंगे कलर हो रखे है।

दिखाई दे रहा है उसके ऊपर प्लेट दिखाई दे रही है काफी सुन्दर नजर आ रहा है सामने की और एक टैंट से बना भी नजर आ रहा है।

यहाँ देख सकते हैं की बहुत बड़ा मैदान नजरा आ रहा है मैदान में कुछ-कुछ घासें भी दिखाई दे रहें हैं। ऊपर खुला आसमान एकदम नजर आ रहा है कुछ-कुछ बादल उसमे भी सफ़ेद-सफ़ेद नजर आ रहें हैं।

बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा जिसके ऊपर कि व्यक्ति बैठ रखा है।

और लाइट भी दिखाई दे रही है।

हम सब देख सकते है कि पानी दिखाई दे रहा है पानी का तालाब है ये बगल में पिलर दिखाई दे रहे है ब्रिज भी दिखाई दे रहे है जैसे ग्रिल लाल कलर की नजर आ रही है।

नीले कलर की है बस की खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है जो की शीशे से बनी हुई है सामने एक घना पेड़ नजर आ रहा है ऊपर आप देख सकते हैं कि --

हम सब देख सकते है कि पानी दिखाई दे रहा है पानी का तालाब है ये बगल में पिलर दिखाई दे रहे है ब्रिज भी दिखाई दे रहे है जैसे ग्रिल लाल कलर की नजर आ रही है।

अगल-बगल भी काफी सारी बोतले जार्ज और राकम नजर आ रहे है यह एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे-हरे कलर के सामने आप देख सकते है ईटों की बाउंड्री छोटी-छोटी दिखाई दे रही है बीचो-बीच एक बाइक भी खड़ी रखी है।

यहाँ चारो ओर घर दिखाई दे रहे है बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे तथा घरो की खिड़कियाँ नजर आ रही है शीशे की।

हम सड़क पे देख सकते हैं कि एक कार भी दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर की है तथा उसके अगल-बगल कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं।